ए चित्र में सभी लोग ध्यान करत हउअन। ध्यान करे बदे लोग यहाँ बईठल हउअन।

सामने एक जहाज खड़ी ह।